यहां पे लोग भी बहोत से घूमने आ जाते हैं जब कभी आते हैं तो बोलते हैं बहोत ही मेने ही तो इन्जॉय भी कर लिया --

और बाहर लैंटर ढलने वाला है और लोग यहाँ पे काम भी कर रहे हैं।

घर अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है। अभी इस घर मे भी काफी समय लगेगा बनाने के लिए और यहाँ पे लेबर भी काम रही है।

घर अभी पूरा नहीं बना है और इसमें भी अभी बीम डली हुई है अभी चौखट भी नहीं लगी है |

घर में बनाने के लिए बहोत समय भी लग सकता है और घर के भी बहोत ही है |

और काम कर रहे हैं बरकर भी और कारीगर भी मेहनत भी लगन से कर रहा है।

ये स्कूल की फोटो है और यहाँ पे बच्चे भी पढ़ने आते हैं और टीचर भी पढ़ाते हैं।

और ये ये स्कूल बहोत ही बड़ा है और यहाँं पे काफी बच्चे भी पढ़ते हैं और --